यह एक महेल के टाइप में है और ये यहाँ से लाल किल्ला भी अच्छा लग रहा है ये --

ओर बगल से पेड़ पौधे भी लगे हुए है। काफी अच्छी घास फूस लगी हुई है और काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुये है काफी मैदान लग रहा हे।

'' यह एक अमर ब्रदर्श का किराना स्टोर है यहाँ बिस्कुट गुटकी पान आपको ड्यू हर एक चीज मिलेगी ।''